तीन चार लड़कियां डांस करते हुए भी नजर आ रही है।

जिसमें बहोत सारे फूल भी लगाए हुए हैं।

दो आदमी बात करते हुए भी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है।

दो लड़के भी दिखाई दे रहे है।

यहां एक स्कूल दिखाई दे रही है।

यहां एक चर्च दिखाई दे रही है।

बहुत सारे टेबल भी है जहां टिशू पेपर और पानी बोतलों से भरे हुए हैं।

यहां एक प्रकार के जानवर दिखाई दे रही है।

वहां दो लड़कियां सेल्फी लेते हुए नजर आ रही है।

दोनों के पीछे और एक लड़का बाइक में बैठे हुए दुकान की ओर देख रही हैं।

बहुत सारे कपड़े लगाए हुए दिखाई दे रही है।

ये गारी एक सफेद की और एक काले रंग में है।

पीछे दो स्टेडियम दिखाई दे रहे हैं।

जीसमें बहुत सारे मुर्गाओ और मुर्गियां भी दिखाई दे रही है।

बोक्सा में शीशे लगाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

अलग अलग तरह की गेम रखे हुए हैं।

सामने एक गोरे वाले झूलने की चीज भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां एक बाजार दिखाई दे रही है।

बहुत सारी अलमिया भी दिखाई दे रही है।

लाल रंग के एक घर दिखाई दे रही है।

यहां एक बड़ी सी गार्डन दिखाई दे रही है।

सामने बहुत सारे पथरे भी दिखाई दे रही है।

पीछे एक मंदिर है यहां बहुत सारे आदमी आए हुए हैं।

और ए_सी रूम दिखाई दे रही है।

सामने एक फूल पोट भी दिखाई दे रही है।

जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां बहोत सारे समान दिखाई दे रहे है सामने।

और बॉल के पीछे बहुत सारे रैकेट भी रखे हुए हैं।